एक आदमी खड़ा हुआ है।

दो लड़कियों ने हाथ में दिया पकड़ा हुआ है।

एक लाल कुर्सी रखी हुई है।

यह पेट्रोल पंप काफी पुराना है।

आदमी ने हरी शर्ट पहनी है।

कुछ बेंचें नजर आ रही हैं।

इस चित्र में बस अड्डा दिख रहा है।

भारत माता की मूर्ति नजर आ रही है।

फूल वगैरा नजर आ रहे हैं।

कुछ पंखे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक शादी हॉल दिखाई दे रहा है।

यह लकड़ी के कैबिन बने हुए हैं।

काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

करके एक दुकान दिख रही है।

बिजली के तार नजर आ रहे हैं।

छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है।

जिसकी हेडलाइट चल रही है।

एक शटर नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक साधु बाबा दिख रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहे हे ये रात का समय हे।

जिस पर पीपल हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

काफी सारी खिड़कियां दिख रही हैं।

इस चित्र में हमें विशाखा डेरी दिख रही है।

औरत के हाथ में एक झोला नजर आ रहा है।